और बाहर में इसका शटर भी है। शटर आई मीन --

ये गाड़ी पर डी.जे. लोड हुआ है जिसमें काफी सारे बैंड बजा भी हैं।

और ये के किनारे एक जनरेटर भी दिखाई दे रहा है।

बुड़ी औरत भी यहाँ पर है और एक आदमी भी वहाँ पर है। बस के पीछे दो लोग खड़े हुए हैं।